जमीन में रखे हुए हैं उसके सामने कैरट भी रखा हुआ है पीछे के टायर में और आगे में गोलिया सी पड़ी हुई हैं इधर पॉलिथीन पड़ी हैं।

बहुत पेड़ है लाइन से और सामने पेड़ से कुछ बना हुआ है । इधर उधर घास भी बहुत है दो खंबे भी पड़े हैं और --

एच.डी.एफ.सी. बैंक उसके ऊपर भी घर थोड़ा बहुत बन रहा है उसके सामने करके खम्बा है और एक चारपाई खड़ी है दरवाजे के पास में।

सामने एक बहोत बड़ा ग्राउंड बड़ा ग्राउंड में पेड़ लगे हुए हैं फल के और बहोत इधर-उधर पेड़ कुछ बड़े-बड़े भी पेड़ हैं।

सामने बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं। जैसे की अस्तबल लग रहा है।